बोहोत अच्छी-अच्छी क्वालिटी चीज़ है इधर --

यहाँ पर एक झाड़ देख सकते हैं कितने सारे हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे और खम्बे भी हैं इधर और बहुत सारी अच्छी अच्छी --

यहाँ पे देख सखते है यहाँ पे बोहोत सारी आजू-बाजू बिल्डिंग है।

ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन वाइट ऑरेंज बहोत सारे कलर के है यहाँ पे आजु बाजु खम्बे भी है और वायर भी है यहाँ पे बहोत सारी चीज --

यहाँ पे बोहोत अच्छे-अच्छे डिजाइन की दीवारें है यहाँ पे घड़ी है बोहोत सारे पंखे भी हैं इधर बोहोत अच्छी चीज़ें --

आपको एक सामने दिख रही होयगी । आपको इत्ता अच्छा खाना और भी बोहोत सारी चीज हैं यहाँ पे।

और यहाँ पे (पर) इस स्टेशन से उस स्टेशन पे (पर) भी जा सकते हैं और यहाँ पे (पर) ट्रैन को आने को टाइम है थोड़ा और यहाँ पे (पर) हम रूके हुए हैं।

फोन पे बात करे हैं किसी से बोहोत इम्पोर्टेन्ट । यहाँ पे अंकल कहीं देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सामने मिठाई की दुकान है और यहाँ पे बोहोत --